कुर्सियां रखी हैं मेज है।

दो मशीन रखी है एक नीले रंग का डिब्बा रखा है ए_सी लगी है।

सफेद रंग का दरवाजा है दरवाजे के ऊपर कांच लगी हुई है केक रखे हैं मिठाइयां रखी हैं झालर जल रही है।

जानवरो के पुतले रखे हुए हैं एक आदमी बैठा है सामने।

घर बने हुए हैं एक घर सफेद रंग--

और ओम नमः शिवाय शंकर जी का एक मंदिर है दो कार खड़ी हैं।

एक खंभा लगा है लाल रंग की दीवाल है पेड़ हैं।

एक आदमी एक औरत चश्मा लगाए हुए हैं।

बन रहे हैं दो पेड़ हैं।

पांच लोग है दो ड्रम है।

नीचे फर्श पर एक टायर पड़ा है जो की पीले और काले रंग से पुता हुआ है।

इसमें छोटी छोटी हरे रंग की घास दिखाई दे रही है सामने पानी भरा है एक आदमी बैठा हुआ है।

एक पावदान है एक गुड्डा रखा है सफेद रंग की चादर है।

इस फोटो में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं सामने माला टंगी है।

इसमें पेड़ों और पौधों के द्वारा सुंदर आकृतियां बनाई गई है।